इस इमेज में एक म मेला दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं।

और सामने कुर्सी पर कुछ लोग इन्हें देखते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर ट्यूबलाइट भी जल रही है।

इस इमेज में यहां पर साड़ी दिखाई दे रही है बनारसी साड़ी जो देखने में बहोत ही सुंदर लग रही है बहोत ही कलरफुल दिखाई दे रही है।

अं वो किला दिखाई दे रहा है जिसमें ढेर सारे दरवाजे है और ऊपर पंखा भी लगा हुआ है।

दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बोर्ड लगा है ब्लू कलर का उसके इलावा --

और दो तीन बाहर की भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

सामने एक ऑटो रिक्शा खड़ा है एक महिला उसको पैसे देते हुए दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन किया गया है यहां पे साइड में एक --

पार्क बना हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर एक देखिएगा डायनासोर की मूर्ति --

आह मॉल दिखाई दे रहा है यहां पर काफी सारा किराने का समान रखा हुआ है यहां पर सामने कुछ लोग --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है यहां पर सामने कुर्सी के ऊपर एक आदमी बैठकर अपना मोबाइल देख रहा है।

पीछे देखिएगा कुछ घर भी नजर आ रहे हैं और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक पानी से भरा हुआ नदी दिखाई दे रही है बाहर देखिएगा दो औरतें --

और बहोत सारे हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं ये नजारा काफी खूबसूरत लग रहा है।

ऑटोमोबाइल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बाहर देखिएगा दो तीन कार भी खड़ी हुई है और यहां पर साइड में --

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ है सामने देखिएंगा --

इस इमेज में देखिएगा नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर लिखा हुआ है प्लांट्स पॉट्स स्टार्ट ऑन फिफ्टी ।

अंदर ढेर सारे प्लांटस पोटस दिखाई दे रहे हैं।

जिसके देखिएगा कांच के खिड़की दरवाजे है।

कुछ बाइक लाइन से खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिन पर लोग बैठे हुए हैं यहां पर साइड में एक कार भी दिख रही है और यहां पर बड़ा सा --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

कुर्सी लगे हुए हैं साइड में कोने में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ देखिएगा।